मैं इस पिक्चर को बार बार देख रहा हूं देख रही--

और साथ में ही पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और साथ में ही आसमान भी--

इस पिक्चर को आप अच्छे से देख सकते हैं।

यहां पर आप इस पिक्चर को बहोत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं।

दिखाई दे रहे हैं और साथ में ही यहां व्हाइट कलर का--

इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक झंडा दिखा--

और पेड़ भी दिख रहे हैं जो कि सूखे-सूखे से हैं।

पंखे भी लगे हुए हैं और साथ में ही यहां--

और साथ में एक बिजली का पोल है और जिससे तारे इधर उधर--